इसके मोर पंख होते हैं वो कितने प्यारे होते हैं यार इसके तो गाइस । पब्लिक देखने के बाद इन्हें अच्छा लगता है कि देखे जाओ देखे जाओ इसको यार।

भारत में ऐसे क्या बड़ी-बड़ी ऊंची बिल्डिंगे दिखाई देती है नाम में जैसे नोएडा वगैरह हुआ नई दिल्ली हुआ जैसे कि नाम है बंबई हुआ जैसे कि कोलकाता हुआ बेंगलोर हुआ वहां पर ऊंची बिल्डिंगे ज्यादा पाई जाती हैं वहां पर।

अब वहाँ पे ये नीचे मुड़ा होता हैं। बड़े अच्छे फर्निचर के द्वारा होती हैं।

देखिये वहाँ प काफी गाड़ियाँ एक साथ निकल सकती हैं।

दूर साइज से कोई भी चीज अच्छी लगती है --

मस्जिद में यार मुंडन धर्म में मस्जिद को अशुभ शुभ माना गया है क्योकिं मस्जिद में नमाज वगेरा पढ़ते हैं।

वैसे काम करते थे लेकिन आज का जमाना कितना अच्छा हो गया। सब काम डिजिटल हो गये हैं।

हाईडोराइजर देने से बहोत फायदा है ये काफी --

ये तो दर्गैह बंद है और इनको क्यों कैद कर कैद करके रखा जा रहा है आज आज।